काउंटर के अंदर कोलगेट रखे हुए है।

ऊपर चिप के पैकेट रेंज कुरकुरे टंगे हुए हैं।

पीछे जालियां बनी हुई है बड़े -बड़े पेड़ दिख रहे है दूर पर बड़ा पहाड़ दिख रहा हहै।

नीली दिवार बनी हुई है कुछ गाड़ियां बाहर खड़ी हुई है।